जिसमें कई प्रकार की आंखें व बोर्ड लगे हुए हैं।

जिस पर कुछ फूलदान वे और भी दिखाई दे रहे हैं।

ये जो आप देख सकते हैं ये आपको सीधे--

इसमें मरीजों की आंखों की जांच पड़ताल की जाती है और उनको उनके द्वारा दवाई दी जाती है।

बहोत वरदानी है ये हमारे हर काम में मौजूद रहता है खाने योग्य पदार्थ है।

ये जो आप दे सकते है ये सामने इस तस्वीर में एक आपको--

जो ये तस्वीर को बहुत अच्छा प्रभावित करती हैं इसके सामने पंडित है।

इसमें आप देख सकते हैं इस गली में बहोत जादा सनाटा छाया हुआ है।

तालवेल खाता है ये हमें पुराने--

ये सभी यहां पर घूमने के लिए इस जगह पर आए हुए हैं।

पीछे सभी बोर्ड लगे हुएं हैं इसमें बहुत ज्यादा दरख़्त भी उगाउ हैं ये बहोत अत्यधिक और सुंदर दृश्य है।

यहां पर आप जाकर पेट्रोल डलवा सकते हैं और सी_एन_जी गैस डलवा सकते हैं ये बहुत अच्छा और नया प्लेटफार्म --